चूड़ी का स्टाल ग्लास से बनाया हुआ है।

दीवार में दो चक्र का ड्राइंग बनाया हुआ है।

और बिल्डिंग का एक साइड बिल्डिंग मे मैथेमेटिक्स क्लासेस लिखा हुआ है।

यहां एक चर्च है सफेद और नीला रंग का।

का बगल बहोत सारा बर्फ गिरा हुआ है।

घर में एक इंसान बैठा हुआ है।